मेले के अंदर एक तरफ झूला भी लगा हुआ है यहां पर लोग अलग अलग घरो से अलग अलग सहरो से मेला और देखने और घुमने भी आते हैं |

यहां पर यात्री हवाई जहाज के अंदर धीरे-धीरे अपना सामान लेकर जा रहे हैं जहाज से उतरने और चढ़ने के लिए एक सीढ़ी डाली

यहाँ पर दो आदमी बैठे हुए हैं जो कि मछलियाँ काटकर अपने ग्राहकों को बेच रहे हैं।

भारत बहुत ही खुबसूरत है जिसका नाम अम्बे प्लाजा है इसमे एक्सिक्स बैंक नाम का एक बैंक है |